ये एक रूम है जिसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ अलग-अलग बेड लगे हुए हैं बीच में एक टेबल लगी हुई है और काफी सारी बुक्स रखी हुई है कुछ खुली भी रखी हुई हैं।

और टेबल पे ए-दो-तीन बॉटल भी रखी हुई है पानी वाली--

ये एक बड़ा-सा हॉल है और इसमें काफी सुंदर डेकोरेशन किया गया है।

जिसमें आप देख सकते हैं बाहर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं और एक कुर्सी भी रखी हुई है।

ये एक बहोत खूबसूरत दुकान है जिसमें आप देख सकते हो बहोत सुंदर सुंदर--

टॉय रखे हुए हैं जैसे कि ये हाथी हुआ मेंढक हुआ चिड़िया हुए मंकी हुआ डॉगी हुआ--

आप देख सकते हैं। ये एक शहर का नजारा है जो कि बाहर दुकान लगी हुई है।

और सामने ही एक कांच नजर आ रहा है। कांच में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जो की नजर आ रहें हैं।

और एक बच्चा भी खड़ा हुआ है पास में इस लड़के के--

और सामने ही एक लड़का बैठा हुआ हैजिसके सामने दो-दो कम्पूटर रखे हुए हैं और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और एक कूलर भी रखा हुआ है।

और ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं और खूब सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं ऊपर भी और पेड़ों से बाँधी गई हैं इनको।

ये सामने एक बड़ा सा मकान है जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारी सिढियां गई है ऊपर जाने के लिए।

और बाहर ही काफी सारे लोग घूम रहे हैं और एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और काफी सारे लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे और--

और रैली में आप देख सकते है रथ बनाया गया जिसको फूलों से लाइटिंग से काफी सुंदर डेकोरेशन किया गया और उसपे घोड़े भी बने हुए हैं।

और एक जेंट्स नीचे खड़ा हुआ है।

और टीवीन के बीचो बीच आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत तस्वीरें भी लगी हुई हैं।

जो कि टी_वी में बच्चे गेम खेल रहे हैं ।